एक आंटी स्टील के बर्तनो के स्टोर के आगे बैठी हैं और एक छोटी बच्ची डोरमेट ले रही है।

एक लड़का कॉलेज को देख रहा है और उसने स्कूल बैग टांग रखा है।

पीछे के मंदिर में दो दुकान है एक दुकान के बाहर बहुत सारे डिब्बे रखे हैं।

तो कुछ लोग खेल रहे है।

बनी हुई हैं ।